इस चित्र में हमे एक मोटर बाइसाइकिल दिखाई दे रही है और सामने एक हमे आकाश जैसा घर रंगीन छोटा एक कमरे वाला नज़र आ रहा है।

इस चित्र मे हम देख सकते हैं की यहाँ पर हमें आ बड़ा सा पानी का समुद्र जो होता है बहोत ही बड़ा वो नजर आ रहा है।